ऊपर में एक झंडा भी लगा हुआ है और एक वायर जा रहा है ऊपर से।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा जिसके अंदर काफी सारी इंसान है टेबल के ऊपर अपने खाने का मजा ले रहे हैं।

और साइड में दीवार में फोटो फ्रेम लगा हुआ--

इस्तेमाल किया गया ऊपर एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ है।

बाकी के छः ब्राउन कलर में है और सीढ़ी है सामने जिसका--

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में काफी सारे सामान दिखाई दे रहे हैं जो कि लाइफ ब्वॉय का सैनिटाइजर है।

मिक्सर मशीन के अंदर काफी सारे बादाम रखे गए हैं।

और व्हाइट कलर के हैं और एक कैंडल भी है।

मुझे इस तस्वीर में काफी सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं और इंसान भी बाइक भी है।

और इसमें एक इंसान भी बैठा हुआ है जो काम करने के लिए बैठा--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

टेबल के ऊपर काफी सारे पानी के बोतल से--

सामने एक टेबल भी है जिसके ठीक सामने

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में एक इंसान दिखाई दे रहा है।

फिर उसके पीछे एक बस स्टॉप है जिसके आगे एक बस खड़ी हुई है।

और उसमें एक स्टॉल भी है जिसमें काफी सारी मिठाइयां रखा हुआ है।

उसके सामने लंबा सा एक ट्यूबलाइट है और साइड में एक लाइट बल्ब --

सामने एक इंसान भी है और सामने काफी सारे बाइक स्कूटी गाड़ी और स्विच बॉक्स है।

और खिड़की के वहां से सुंदर सा एक नजारा दिखाई दे रहा है।

साइड में काफी सारे चेयर्स हैं और नीचे मेट लगा हुआ हैं।

पीछे काफी बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है और उसे बिल्डिंग का छत--

इसमें काफी सारे गंदे है काला काले कलर के और उसके चमड़े छिल रहे है।

साइड में टेबल भी और शेल्व्स के अंदर काफी सारे डब्बे रखे गए।

जिसमें आनंद धारा डिस्टिक ऑफिस लिखा हुआ है जिसके आगे--

इंडिया फ्लैग को लहराने के लिए सजाते हुए काफी सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं और एक औरत भी है।

एक कैरी बैग रखा हुआ है साइड में कॉफी सारे फूल रखे हुए हैं।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

इसके ठीक आगे ए_सी सैलून ए_सी के नाम से भी लिखा गया है जिसको फूल से सजाया गया है।